बैनर लगा है इसमें लिखा है--

श्री श्याम ट्रेडर्स टायर व्हील एलाइनमेंट --

दिखाया गया है कि यहां पर एक बड़ा सा मॉल है जिसमें घर के सारे आइटम --

बड़ा सा कैफे है जिसके ऊपर लिखा है वान ताई और यहां रात का सीन है।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

और यहां पर एक पेड़ भी है।

एक लड़का खड़ा हुआ है यहां पर एक पेड़ भी दिख रहा है।

इस फोटो में दिखाया गया है कि--

वहां पर पर एक मकान बना हुआ है जिसके बाहर एक बड़ा सा हरे रंग का गेट लगा हुआ है।

और सामने अलमारियों में एक बॉक--

इस फोटो में दिखाया है कि--

और यहां पर लेडीज गारमेंट्स रखे हुए है टंगे हुए हैं यहां प--

यहां पर कमल के फूल भी दिखाई दे रहे हैं। यहां पर एक टोकरी में--

जिसने यहां पीले रंग की टी शर्ट पेहनी हुई --

बड़ा सा लाल रंग का इचर ट्रैक्टर खड़ा हुआ है।